इसके इलावा यहाँ पे हम और भी बहोत सारे दुकान देख पा रहे है और इन दुकानों में हम बहोत से कस्टमर को देख पा रहें है।

इस मंदिर के बाहर हम कुछ भगवान कि मूर्ति देख सकते है इसके अलावा इस मंदिर के आसपास हम कुछ छोटे बड़े पेड़-पौधे देख पा रहें है।

यहाँ पे हम एक मंदिर देख सकते हैंइस मंदिर के भीतर हम एक बुध देव कि मूर्ति देख पा रहें हैं इसके इलावा हम और भी मूर्ति देख पा रहे है।